ये मुर्गी दिखाई दे रही हैथम्स अप का बॉटल फेंका हुआ हैपानी दिखाई दे रही है घर है पेड़ पौधे है।

और लाइट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है...और कपड़ा अच्छे-अच्छे हैं यहाँ का नजारा बहुत अच--

सेल लगा है आंटी खरीद रहे है कान का है क्लिप है लाइट दिखाई दे रही है।